यह कोई मॉल है जिसमें बहुत सारे मूर्ति लोग का बिक्री होता है यहां पर।

यह एक कहीं का झील चट्टान है यहां पे बहोत सारे चट्टान ईटा पत्थर--

और यहां पर पेड़ पौधे हैं और वहां पर एक कल दिखाई दे रहा है और यह जगह बहूत अच्छा लग रहा है।

यह एक कनी का बहुत बड़ा स्कूल या कालेज है यहां पर--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

यह कहीं का बहुत बड़ा स्कूल लग रहा है कॉलेज और यहां पे खेलने का ग्राउंड भी है और यहां पे--

डब्बा में भी सामान रखा हुआ है कैटुन में और हर खंडा खंडा में सामान रखा हुआ है और इसके ऊपर खंडे में भी सामान रखा है।

कंप्यूटर भी है और यहाँ पे लैपटॉप भी है और उस पे समान भी रखा हुआ है और यहाँ पे कई तरह के फ्लावर्स भी रख है और यहाँ पे --